यहां पर डीजल भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पार्क में कुछ झूले भी दिखाई दे रहे हैं पार्क में यहां पर झूलों पर बच्चे भी खेल रहे--

यहां पर बहोत सारे हार भी रखे हुए दिखाई दे रहे--

यहां पर कुछ सोफे भी रखे हुए दिखाइए दे रहे हैं।

यहां पर पहाड़ों का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर आसमान भी दिखाई दे रहा--

इनका कलर भी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा--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

मेरे सामने एक गार्डन दिखाई दे रहा है गार्डन वाली घास भी दिखाई दे रही है।

उड़न में एक आदमी भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर निकरी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसके कलर वाइट कलर का दिखाई--

मेरे सामने एक सी दिखाई दे रहा है सी में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है।

सी का पानी ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है यहां कुछ बादल भी दिखाई दे रहे है।

सामने एक शॉप नजर आ रही है।

यहां पे टीचर कुछ समझा भी रहा--

यहां पर बहोत सारी लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।

वहाँ पर बहोत सारी मेज दिखाई दे रही है। इसकी दीवारें येलो कलर की दिखाई दे रही हैं।

मेरे सामने एक क्लासरूम दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक शॉप दिखाई दे रहीं हैं।

कंपनी में बहुत सारी लोहे की मशीनें भी दिखाई दे रही हैं।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

यहां पर कुछ लोग भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

उपर लोहे का पोल भी लगा हुआ दिखाई--

ग्राउंड के पास एक घर भी दिखाई दे रहा है।